सामने एक गेट बना हुआ है इसमे ब्लैक कलर का पर्दा लगा हुआ है।

मार्केट के अंदर फ्लॉवर्स के दुकाने लागी हुई है चारो तरफ यहाँ पर दुकाने लगी हुई है इसमे सामने की तरफ बड़ी सी दुकान लगी है जिसमे में गेंदे के फूल बिक रहे है गुलाब के फूल है च--

मेला है सामने की तरफ एक बड़ा सा मेला नजर आ रहा है जिस मे तरह तरह के लाईटिंग लगी हुई है इस में राई झूला भी है ब्रेक डांस झूला भी --

स्विमिंग पूल है सामने की तरफ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल नजर आ रहा है इसमे ब्लू कलर की टाइल्स लगी हुई है और उसके अंदर पानी भी भरा हुआ है इस में चारो तरफ ब्लोक्स लगे हुए है बीच में रेड और ब्लैक कलर की पट्टी है।

सामने की तरफ बैठ ने के लिए व्यवस्था बनी हुई है जो पिंक कलर के पर्दे है नीचे की तरफ उसमे सोफ़े रखे हुए है पीछे की तरफ पहाड नजर आ रहे है।

खड़ी हुई है सामने की तरफ बहुत सारी सवारिया खड़ी हुई है सामने की तरफ बहुत सारी बोर्ड भी लगी हुए है वही बड़ासा ग्राउंड भी नजर आ रहा है चारो तरफ ग्रीन ग्रासेस लगी हुई है पेड़ पौधे लगे हुए है।

मार्केट है सामने की तरफ एक महिला यहाँ पर मछ्ली बेच रही है इसमे काउंटर पर चबूतरे पर बहुत सारी मछलिया रखी हुई है सामने की तरफ एक वेट काटा भी रखा हुआ है इसमे तराजू बाट भी रखा हुआ है पीछे की तरफ बाल्टी भी मछ्लीया है।

जैसे सामने की तरफ एक डांस इस्टेज बनी हुई है जिसमे एक महिला यहा पर डांस कर रही है यहा पर रेड कलर का लांचा पेहनी हुई है ऊपर ब्लॅक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

पीछे की तरफ इसमे फ़्लेक्स लगा हुआ है जो ब्लॅक कलर का है नीचे की तरफ बहुत सारी चमकनी पड़ी हुई है सामने तरफ एक रुमाल भी पड़ा हुआ है।

पाना है पेचकस है इत्यादी समान रखा हुआ है।

दो बोर्ड लगा हुया है जहाँ पर बच्चीया की फोटो लगी हुई है एक महिला की फोटो लगी सामने की तरफ बडीसी सड़क सड़क पर एक स्कूटी एक ऑटो वाला जा रहा है सामने की तरफ इसमे डम्मी रखी हुई है।

यहाँ पर कुछ मजदूर ऊपर की तरफ काम कर रहे है कुछ मजदूर जमीन पर खड़े हुए है सामने की तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है सामने की तरफ़ बड़े बड़े पेड़ पोधे लगे हुए है।

ग्राउंड बना हुआ है पीछे की तरफ बड़ा सा ग्राउंड है जिसमे ऑटो खड़े हुए है पीछे की तरफ स्कूल नजर आ रह है इसमे चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए है।

सामने की तरफ एक बडासा नदी नजर आ रही है जिसमे पाणी स्टोर करके एक मशीन के ऊपर बहुत सारे लोग महिलाए खड़ी हुई है कुछ पुरुष भी खड़े हुए है।

लाइब्रेरी हॉल है सामने ई तरफ टेबुल रखा हुआ है टेबल के ऊपर एक वेक्ती टेबल पे कुछ लिख रहा है बुक्स राखी हुई है सामने की तरफ बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है।